सामने रेड कलर की कारपेट बिछी हुई है और ढेर सारी टैबले लगी हुई--

ग्राउंड के अगल-बगल बिल्डिंग नजर आ रहा है.

एक ग्राउंड डेकोरेट किया हुआ है जहां पे कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है नीचे-

टमाटर टाइप टाइप का नजर आ रहा है.

दुकान के सामने काउंटर लगा हुआ है जिसका काउंटर टॉप शीशे का है.

यह एक मोल का तस्वीर है.

और निचे ब्लेक पेंट पहने हुए एक आदमी ब्लू सेंडो गंजी पर हे.

इसका स्क्रीन खुला हुआ है.

जो ब्लैक कलर का टीशर्ट ओर ग्रे कलर का पैंट पहना हुआ है.